ठीक है जी और आपने यिप्पी दूसरे सॉन्ग --

इस तस्वीर में--

काम करते हुए दिखाई दे रहे है--

यह एक प्रीमियम जिम --

ऑफिस भी दिख रहा है।

हैं नाइन जीरो --

तैरीन की शॉप तस्वीर में दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में आप को--